जहां पर सफेद और ऑरेंज --

पास में ही एक बड़ी सी फोर व्हीलर --

सामने टेबलें और कुर्सियां लगी हैं टेबलों के ऊपर--

जहां पर साड़ियां टंगी हैं।

सामने फोर व्हीलर कारें जो कि वाइट और--

जहां पर एक स्विविंग पूल बना हुआ है।

जिसके ऊपर भारतीय भवन --

ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है बिल्डिंग में--

सामने भी काफ़ी सारे कपड़े खड़े हुए हैं।

पालती मार कर बैठी हुई हैं।

डिजाइन भी बने हुए हैं।

और नित्य प्रतियोगिता --

इस पिक्चर में एक बड़ा सा रूम बना हुआ है।

रूम में बहुत सारी कुर्सियां लगी हैं।

पास में एक भारत पेट्रोलियम बना है।

ये एक बड़ा तालाव है जिसके अंदर बहुत सारा पानी भरा है ।

चलती फिरती दिखाई दे रही हैं।

मैदान में काफी सारे पेड़ लगे हैं।

जो कि एक्टिवा और बाइक हैं।

घर के बाहर कुछ टू व्हीलर गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

ये एक काफी बड़ी बिल्डिंग है।

जो कि काफी बड़ा अंबारी--

जहां पर कुछ पुरानी दीवारें लगी हैं ।

कुछ व्यक्ति सामान खरीद रहे हैं ।

इस पिक्चर में एक मंडी दिखाई दे रही है।

मैदान में एक बड़ा सा टावर भी बना हुआ है।

और बीच मे कुछ पानी भी भरा हुआ है।